यख मा जी एक बडु भारी कू झंडा छ यु हमारु भारत देश कू झंडा छ यख पर चार रंग औंदा छन।

लसुन च प्याज च आलू च करेला च यखमा जी कई सारी छोटी-छोटी टोकरी छिन रखीं यखमा जी त्रिपाल च लगयूं डंडा छन बास्केडा छन यखमा जी कुछ लोग छिन तराजू च यखमा जी --

यखम जी एक पानी को झरना च निकल लग्युं यखमा जी कई सारा बड़ा-बड़ा ढूँगा छन रखियाँ यखमा जी गाड़ क्र च बगड़ लगीं।

यख मा जी केबल का तार भी छन यख मा जी रेलिंग छा यख मा जी कई सारा हरयाँ भरयां डाला भी छन।